इस इमेज मे हमको एक होस्पिट्ल जैसा दिखाई दे रहा है जिसमे कूड़ेदान रखा हुआ है यहाँ पर एक बेड रखा हुआ है यहाँ पर हमको एक नर्स दिखाई दे रही है।

मे हमको एक कटिंग की दुकान दिखाई दे रही है जिसमे एक व्यक्ति बैठा--